यह नंदन पहाड़ है जो बरमसिया साइड है।

झूला में भी दो लड़का झूला रहा है उधर भी झूला में कोई झूल रहा है।

बहुत ही बड़ा सा जिगर का मूर्ति बना हुआ मतलब पाइप जैसा यहां से वहां तक ।

पे भी सर और एक स्टूडेंट भी है एक लड़की भी है शायद व्हाइट कुर्ती पहन के।

नीचे में एक लेडी बैठी हुई है।

एक आंटी भी है खड़ी वहां पे ब्लैक कलर का साड़ी पहन के दो कुर्सी लगा हुआ है।

ये चिकन का दुकान है।

नीचे में एक पिंक कलर का मग भी है।

व्हाइट कलर का बेसिन है इधर सायद दरवाजा है साइड में।

सामने में एक व्हाइट कलर का पाईप नजर आ रहा है।

एल_इ_डी टी_वी भी लगा हुआ है जिसमें शायद सी_सी टी_वी कैमरा का स्क्रीन दिख रहा है।

घर नीचे में एक कैलेंडर भी है फूलों का गुलदस्ता भी है रेड कलर का ।

जींस पहन के खड़ा है बगल में भी एक दुकान है जहां पे शटर गिरा हुआ है।

और सामने वाला दुकान में शीशा लगा हुआ और अंदर में कुछ कुछ है।

यहां पे सामने में शीशा जैसा दिख रहा है।

प्लेट मे कुछ रखा हुआ है।

ये जो सिटी का सीन है जहां बड़ा सा प्रवेश द्वार है।

एभी बैठने का ही है इधर छोटा छोटा घास घुस वगैरा है।